सीमेंट छड़ गिराए हुए हैं यह घर काफी सुन्दर है।

सभी आदमी यह खरीद करके अपने घर के द्वार मे लगा --

यह ट्रेन में सभी आदमी सफर करते हैं।

यह मेला में बोहोत सारे बच्चे यहाँ पर खुशी से झूम रहे हैं एवम--

ये पान के गुमटी में बहुत सारे पावरोटी रखे गए हैं।

यह मंदिर में बहुत ही सुन्दर --